यहां पर एक शादी समारोह चल रहा है| यह गेट पर बहोत ही अच्छी सजावट की गई है।

समुद्र में नाव डली हुई हैं और उस नाव पे चार पांच व्यक्ति भी बैठे हुए हैं। ये बोहोत अच्छा द्रिश्य लग रहा है।

यहाँ पर पेपर चल रहा है सभी बच्चे पेपर दे रहे हैं |

यहाँ पर कुछ सद्धरालू लोग देवी जी के पास में खड़े हुएँ हैं। यहाँ पर बहोत ही अच्छी मूर्तियां बनाईं गईं हैं।